ये एक बड़ी सी रोड है इसके यहां पे एक बड़ा सा प्लेन है।

और यहां पे दिवाली लगी हुई है उसके पास रेलिंग बनी हुई है और इधर ही और भी लोग दौड़ रहे हैं।

इस इमेज में एक बहोत बड़े ज जगह की फोटो है।

और दुकान के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए दुकान के अंदर भी दो लोग हैं और दुकान में कैमरा लगा हुआ है और दो फैन लगे हुए और लाइट्स भी लगी हुई हैं।

और एक बोर्ड बना हुआ है ऊपर रेड कलर का और ऊपर से बहुत सारी लाइट्स भी आ रही है और एक दरवाजा भी है।

उस घर में दो दो खिड़कियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी और इधर भी पेड़ बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं और सामने दो लोग खड़े हैं।

ये एक मंदिर की इमेज है जहां पे सामने राधा कृष्ण जी की बड़ी से मूर्ति लगी हुई है।

और उधर दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और इधर बहुत सारे लड़के खड़े हैं।